यह एक बहुत अच्छा डांस क्लास रहा है इसमें बहुत जने।

और इधर साइड में दो ठो स्कूल इशकूल बस नजर आ रहा है इशकूल बस को --

और देखने में यह लग रहा है की यहाँ पर एक झने खाना बना रहा है।